लोग भी हैं जो कि कुछ लोग रिक्शे से दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बाइक पे बैठे हुए हैं कुछ लोग ऑटो के बाहर में हैं और इस पंडाल के सामने में--

एक आदमी है जो कि एक कुर्सी जैसे जिम पे बैठा हुआ है और ऊपर से कुछ खींच रहा है।

जो दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के हैं और यहां पे एक और आदमी है।

यह एक केक का दृश्य है जिसके ऊपर में बहुत सारी चॉकलेट्स लगाई गई है और ओरियो बिस्किट्स लगाए गए हैं।

ये एक बकेट में रखा हुआ टमाटर है जो की काफी सारा है।

यहां पे एक प्रतिमा बनाया गया है जिस पे वीर शिवाजी बैठे हुए हैं घोड़े पे।

यह एक क्लीनिक का दृश्य है जहां पे अ एक बेड दिखाई दे रहा है।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

या पे कुछ लोगों की कपड़े भी नजर आ रहे हैं जो कि इस इस पत्थर पर रखे हुए हैं।

कुछ ऊपर में भी जो की उगे हुए नजर आ रहे हैं।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

बस के बगल में कुछ व्हाइट टंकी भी नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा सा हाल है सामने में यहां का ऑफिस बनाया गया है जहां पे बहोत सारे लैपटॉप्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक कंपनी नजर आ रहा है जिसका नाम है टाटा मोटर शारदा और यहां पर टाटा का लोगो भी बनाया गया है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर में एप्सन सर्विस सेंटर लिखा हुआ है और नीचे में एसेंस टेक्नोलॉजी ।

दृश्य में हमें एक ऑफिस की तरह नजर आ रहा है बिल्डिंग ।

अभी कुछ बाइक्स बाहर में लगे हुए नजर आ रहे हैं घास के ऊपर में कुछ जीप भी नजर आ--

यहां पे बहोत सारी चीजें नजर आ रही है जो की डब्बे में पैक्ड है।

इस दृश्य में हमें एक बैनर चिपकाया हुआ नजर आ रहा है जिसके ऊपर में आर्यन डिजिटल लिखा हुआ है।

जिस पर कुछ टंगी हुई नजर आ रही है बाहर में और अंदर भी कोई तरीके के पोस्टर टंगे हुए हैं।

यहां पे कुछ शीशे में पैक्ड मोबिल्स नजर आ रही है जो की अलग अलग कंपनी की है।

ए_सी भी लगाया गया है कई तरीके के फ्रेम्स नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक बोर्ड नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर में अमय मेडिकल एजेंसी लिखा हुआ है।

नीचे में कुछ लोग हैं जो कि नीचे में बैठे हुए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसके नीचे में हथौड़ी पड़ी हुई है।

छू के अपने पैर को छू रहे हैं और यहां पे कुछ और भी कार्पेट्स रखी--

इस पेट्रोल पंप में ऊपर में कुछ गेंदे के फूल से सजावट की गई है नीचे में कुछ वर्कर्स हैं।